फोटो में एक बारबर की दुकान दिखाई गई है।

नीचे की तरफ मशीन में एक बड़ा सा जैक लगा हुआ दिख रहा है।

इस फोटो में सामने एक बुक सेलर दिख रहा है जिसमें अलग अलग तरीके की रैक बनी हुई है जिनमें कुछ बुक लगी हुई है ऊपर की तरफ कुछ बड़े बड़े पोस्टर चिपके हुए दिख रहे हैं।

सामने एक फ्रिज दिख रही है जिसके ऊपर एक स्टिंग की बोतल रखी हुई दिखाई दे रही है और कुछ पानी की बोतलें रखी हुई हैं।

सामने कुछ नमकीन के पैकेट टंगते हुए दिखाई दे रहे हैं नीचे कुछ मैगी रखी हुई दिखाई दे रही है और कुछ बिस्किट रखे हुए हैं।

फोटो में सामने एक कुछ लड़के खड़े हुए हैं और उनके आगे टीचर खड़ा हुआ है।

और एक छोटा-सा पार्क दिख रहा है सामने कुछ बड़ी-बड़ी आकृतियां बनी हुई हैं।

पीछे की तरफ एक बिल्डिंग दिख रही है जिस पर सफेद रंग हो रखा है।

सामने एक टेबल पर बड़े कपड़े दिखाई दे रहे हैं जो कि चटा लगा हुआ है।

इस फोटो में सामने एक बड़ा सा ढाबा दिखाई दे रहा है।

मां की रसोई लिखा हुआ है बीच में एक ढाबा लिखा हुआ है।

ऊपर की तरफ कुछ लाइटें लगी हुई है और सोलर पैनल लगे हुए हैं।

सामने कुछ मशीनों के अंदर टैंक फिट रखे हुए हैं।

सामने लोहे की बड़ी मशीने रखी हुई है जिनमें कुछ चकरी लगी हुई हैं।

नीचे की तरफ एक मिस्त्री अंदर कुछ काम करता हुआ दिख रहा है।

इस फोटो में सामने एक चकरोट दिखाई दे रही है जिसमें कुछ मट्टी दिखाई दे रही है और कुछ घास उगी हुई दिख रही है।

इस पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है और एक काले रंग का ऑटो के पीछे टायर टंगा हुआ दिख रहा है।

और कुछ भुट्टे रखे हुए दिख रहे हैं जिस पर हरा कवर चढ़ा हुआ है।

जिस पर एक पर टॉवल लटकी हुई है। सामने एक आदमी शीशे में दिख रहा है जो कि फोन पर बात कर रहा है।

नीचे की तरफ एक बड़ा सा सफेद रंग का सोफा पड़ा हुआ है।

और सामने ट्रेडमिल की एक मशीन दिखाई दे रही है।

खेत में कुछ पानी भरा हुआ है और सामने की तरफ नाले में भी पानी भरा हुआ है बीच में एक मेड लगी हुई है।

और उसके पास में ही एक चेयर पड़ी हुई है जिसपर एक आदमी बैठा हुआ है।

सामने एक बड़ा सा ताजमहल का पोस्टर लगा हुआ है।

इसमें सामने टेबल पर रखी हुई कॉफी की मशीन दिख रही है जिसके ऊपर दो जग रखे हुए दिख रहे हैं।

ओ ऊपर की तरफ छत पर दो कैमरे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं सामने मोबाइल की दुकान में बड़ी बड़ी रैक बनी हुई है।

पीछे की तरफ कुछ चार्जर पड़े हुए हैं और कुछ गिलास पड़े हुए हैं सामने हेडफोन रखी हुईं हैं।

इस फोटो में सामने एक झोपड़ी दिखाई दे रही है पीछे की तरफ एक बड़ा सा रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है एक ग्राउंड में पड़ा हुआ बहुत सारी कुर्सी दिखाई दे रही हैं।

और एक दुकान दिखाई दे रही है जिसके अंदर एक टेबल पड़ी हुई है।

इस फोटो में सामने एक पीछे की तरफ मकान दिख रहा है।

साइड में ये खंबा खड़ा हुआ है जिस पर कुछ बेल लगी हुई है।

सामने कुछ खिड़कियां बनी हुई हैं और अलग अलग तरीके के डिजाइन बने हुए दिख रहे हैं जो कि लकड़ी के तख्तों से बने हुए हैं।

सामने कमरे में पड़े हुए दो रखते दिख रहे हैं और एक सीढ़ी रखी हुई है।

एक स्विच में चार्जर लगा हुआ है सामने एक प्रिंटिंग मशीन और दिख रही है।

इस फोटो में सामने एक रोड दिखाई दे रही है जिस पर एक महिला जाती हुई है दिखाई दे रही है।

पीछे की तरफ कुछ दरवाजे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और सामने गली जाती हुई दिखाई दे रही है।